सामने हमें माता रानी की कुछ प्रतिमाएं नजर आ रही हैं।

उनके हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर है।

ये पूरा जगह ग्रीन नेट से गिरा हुआ है।

तलाब जैसा नजर आ रहा है।

साथ ही यहां पर दीवार का रंग भी नीला है।

जो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहा है।

एक मकान दिखाई दे रहा है।

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने कोई सफेद रंग के कागज पकड़े हुए है।

परिसर में बहोत से गाड़ियां खड़ी हुए दिखाई दे रही है कुछ लोग नज़र आ रहे है साथ ही कुछ पेड़ लगे हुए है।

सामने कुछ बड़ी रैक बनी हुए हैं।

एक मछली की दुकान को देख रहे हैं।

बड़े बिल्डिंगों को देख पा रहे हैं।

छोटे बच्चों के खिलौने नजर आ रहे हैं।

एक बड़े से क्लास रूम को देख रहे हैं।

एक लाल रंग का बड़ा सा बॉल नजर आ रहा है साथी एक ए_सी भी दिखाई दे रहा--

कुछ लोगों को देख रहे हैं।

जिस पर हमें बहोत ही सुंदर सुंदर कप दिखाई दे रहे हैं।